और एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

और फर्श पर डिजाइन बनी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में यहां पर एक कपड़ों की दुकान नजर आ रही है।

जहां पर सूट टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

और गेट भी दिखाई दे रहा है।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

एक मैदान दिखाई दे रहा है।

एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां बेंच लगी है।

इस इमेज मे यहां पर कुछ दुकानें दिखाई दे रही है।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

इस इमेज मे यहां पर हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक मॉल दिखाई दे रहा है।

जहां पर खाने के पैकेट्स भी रखे हैं।